अरे वाह भाई ये तो भाई फैक्ट्री है और काफी बड़ी फैक्ट्री है।

काफी बड़ा तालाब है यार इसमें यार पुल भी जा रहा है यार बीचम बीच इसके काफी बड़ा पुल है और कितनी अच्छी लग रही है यार भाई इसके साइड में।

और यार मोमबत्ती का स्टैंड कितना अच्छा लग रहा है कितने अच्छे-अच्छे रंग के फूल है यार भाई यहाँ पर।

और कितना बढिया इसमें खिड़की लगाई गयीं हैं यार गेट है भाई ये शीशे का डिजाईन कितना अच्छा निकाला है यार इस मिस्त्री ने।

अरे वाह यार भाई कितना अच्छा यार स्कूल है यार ये।

कितनी बड़ी दुकान है यार किराना की इसका नाम है साईं शारदा स्टोर ।

बहुत अच्छा हॉस्पिटल है यार ये डब्ल्यूटीएम में गया हूं यार इसके अंदर भाई।

गुलाब के फूल गेंदे के फूल और गेंदे के लाल वाले भी कितना अच्छा आ रहा है यार भाई।